जिसमें ये एक मरियल लड़का सेल्फी ले रहा है।

जिसमें सभी परचून का सामान लेने शैंपू टूथपेस्ट ब्रश --

यह एक मेडिसिन की शॉप लग रही है।

यह एक माता का मंदिर है हिंदू माता शेरावाली का दुर्गा मां लग रही है।

पंखा भी लगा है परदे लगे हैं।

बहोत सारे लोग हैं पीछे मंदिर है बहोत ही सुंदर लग रहा है।

जहां पर बहोत सारे केमिकल पेंट रखे हुए हैं।

मंदिर के ऊपर एक फ्लैग लगा है।

बहुत सुंदर है चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।

जो वजन बढ़ाने और ताकत के लिए जरूरी होती है यह--

बहुत सुंदर गार्डन है बहुत प्यारी इमारत है बहुत ही सुंदर नजारा है।

यह एक दुकान लग रही है।

यह एक बहोत बड़ा पेट्रोल पंप लग रा--

बहोत ही साफ सफाई है बहोत ही सुंदर नजारा है घास--

यह राधा स्वामी आश्रम लग रहा है।

जहां हरी भरी घास है पेड़ पौधे हैं चारों तरफ हरियाली है।

बादाम पिस्ता नमकीन बहोत सारी चीजें रखी है।

जहां पर बहोत साफ सफाई है।